अंदर एक आदमी है जो पैसे काट रहा है।

यहां पे है बहुत सारे लोग ठहरे हैं जो यहां पे हैं।

और यहां पे गाड़ी भी पंचर भी है यहां पे जो नंबर लगाए हुए हैं यहां पे--

टेबल कुर्सियां रखे गए हैं जो होटल है यहाँ पे--

और यहां पे है मेडीवर्सल लिखा गया है।

और यहां पे बहुत खूबसूरत सा नजारा भी है जो पानी आ रहा है ऊपर से--

और जो डबल दिखाई दे रहा है रात का टाइमिंग है यहां पे--

और यहां पे बेंच भी है जो बेंच के ऊपर बुक्स रखे हैं।

अपना अपना पेपर लिख रहे हैं नीचे मुंडी डालकर और यहां पे हैं।

यहां पे है एक गार्डन है जो यहां पे हरियाली है.

एक खुला है एक बंद है एक लेडीज है जो जा रही है अंदर।

यहां पे दीवार का कलर येलो है पर्दा भी है यहां पे.

यहाँ पे बड़ाााा सा गोदाम है और इसमें --

और यहाँ पे कागल कुछ तो काम कर रहा है और यहाँ पे है --

और यहाँ पे खिड़कियाँ भी हैं बड़े-बड़े खिड़कियाँ नजर आ रहे हैं।